लगा हुआ है उसमे वाइट कलर की लाइटें लगी हुई है एक बॉक्स रखा हुआ है बक्सा रखे हुए है डोरी दिखाई दे रही है ।

सोफे रखे हुए है अलमारी रखी हुई है कैरी करके कुछ लिखा हुआ है वाइट कलर से गुलदस्ते रखे हुए हैं।

गेट दिखाई दे रहा है झंझरियाँ दिखाई दे रहे इस मकान में कुछ जेंट्स लेडीज बैठे हुए है छाता दिखाई दे रही है ।